यह किसी स्कूल का स्कूल का परेशी स्कूल नहीं यह भांगरा ब्लाक कुछ नाम है। इसका स्कूल नहीं है यह ।

यह शायद कसेली का गाछ है शायद और यह देखने में मुझे बहोत ज्यादा आनंद आया ।

यह एक बोहोत बोहोत अच्छा नजारा देखने में लग रहा है। काश मैं भी इसी प्रकार कूदता --